बगल में हरे रस के ब्रश दिखाई पड़ रहे है।

मुझे इस तस्वीर पे एक बेकरी दिखाई पड़ रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर दिखाई पड़ रहा है।

मुझे इस तस्वीर पे एक दुकान दिखाई पड़ रहा है।

इंसाने भी दिखाई पड़ रहा है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारे गाड़ियां दिखाई पड़ रहा है।

मुझे इस तस्वीर में फुटबॉल ग्राउंड दिखाई पड़ रहा है।

बगल में इंसान भी खड़ा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर पे फर्नीचर के दुकान दिखाई पड़ रहा है।

मुझे इस तस्वीर पे एक दुकान दिखाई पड़ रहा है।

मुझे इस तस्वीर पे बहुत सारे इंसाने दिखाई पड़ रहा है।

बहुत सारे पीलो भी रखा हुआ है।

स्टेज के बगल में लाइट जल रहा है।

मुझे इस तस्वीर पे एक कमरा दिखाई दे रहा है।

मुर्गियां सफेद रंग की है।